तस्वीर में नीला आसमान हरे-भरे पेड़ दिख रहे हैं। इसमें एक महिला एक व्यक्ति पूजा करते नजर आ रही है। पानी --

सड़क दिखायी दे रही है बहुत सुन्दर लग रहे हैं सड़क गीली हो रही है। इसपे कोई व्यक्ति दिखाई नही दे रहा चित्र में बहुत सुन्दर लग रहा है।

बड़ी बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है नीचे की तरफ भी दो मूर्तिया रखी दिख रही है चाइना की चाइना जैसी मूर्तिया लग रही है सामने पीछे की तरफ दिख रहा है।